कुर्सियां रखी हुई है काले रंग की औ और सामने एक बड़ा टेबल है टेबल के उस साइड से बड़ी कुर्सी है।

एक बच्चा कुछ बेच रहा है सामान साइकिले हैं बाइक्स हैं बहोत सारी।

चारों तरफ मिट्टी है पानी का लंबा सा पाइप है।